लाइट वाईट बढ़ियाँ चमक-वमक रहा है पूरा लाइट वाइट जल रहा है बोटल वोटल है।

फुग्गा उग्गा से सजाए हे ये हॉल को--

जो एक भैया है जो बाहर झाड़ू वाडू लगा रहै हैं।